बाइक्स वगैरा भी यहां पर है बहुत सारी एक्टिवा अलग अलग कलर में यहां पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

और ये एक जंगल लग रहा है बहोत बहोत बड़े बड़े पेड़ लग रहे हैं यहां पे।

और कस्टमर भी मुझे शीशे मिरर में दिखाई दे रहा है कोई और एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

मैं इस तस्वीर में देख पा रही हूं कि एक स्कूल की तस्वीर है जहां पर कोई पीछे रस्सी खींच वाला ये गेम खेल रहे हैं।

और पास में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है ऐसा जैसे कोई मैरिज हॉल वगैरा हो।

मैं देख पा रही हूं के बैंक के बाहर के कुछ बाइक पार्क है और गार्ड भी है।

और पीछे बोहोत सारी औरतें भी हैं जो नहा रही हैं और आदमी है बोट के ऊपर हाथ में बाँस के डंडे लिए हुए खड़े हैं।

और ये मशीनें मुझे सिलाई मशीन की तरह दिख रही हैं जो कि काफी अधिक मात्रा में यहां पे है।

बहोत सारी मशीने और इन मशीनों से कपड़े की सिलाई की जाती है।

और उसका शरीर का आधा हिस्सा अंदर है और ये मुझे बहुत डरावनी गुफा लग रही है।

और नीचे बोहोत अच्छे मैट मैटर डले हुए हैं रेड और ग्रीन कलर के। पीछे एक आदमी फोन पे बात कर रहा है। ब् --

मैं इस तस्वीर में देख पा रही हूं ये कोई शॉप है फूलों की जहां पर ये फूलों की मालाएं टंगी हुई है।

मैं तस्वीर में देख पा रही हूं कोई मार्केट है।

जिसमें कुछ स्टूडेंट सीट पर बैठे हुए हैं और ओ आपस में बात कर रहे हैं।

पीछे एक विंडो के पास एक वॉटर बॉटल रखी हुई है।

जो उस प्रजेंटेशन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य को नोट कर रहे है।

और ये स्टेड हुआ था नाइनटीन एटी थ्री में और ये एरिया फैला हुआ है एट हंड्रेड नाइनटीन प्वाइंट ।

कपड़े नदी के किनारे रखकर वो जा रही है कुछ बैठे हुए हैं।

टेबल रखी हुई है। सोफे रखे हुए हैं यहां पे। टेबल के ऊपर एक खाली थम्सअप की बोतल रखी हुई है।

जिसमें बहोत सारे झूले हैं अलग अलग प्रकार के।

और पास में ही एक बहोत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है रीडर्स पैराडाइज लाइब्रेरी का जो आगे से जाकर है।